यह रोड बहुत ही साफ़ सुथरा है।

दिखाया गया है यह सलून बहुत हीं बढ़िया सलून है।

यह एक नदी का फोटो दिखाया गया है।

नदी में बहोत सारे मछली भी रहते हैं।

यहां पे बहोत ही स्वादिष्ट चिकन बनाया जाता है।

डैम में बहुत तरह के मछली भी रहते हैं |

पेड़-पौधे हैं जिसके कारण से यह घर में हमेशा ठंडी हवा चलती होगी।

रखे जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग --

छठ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है

फोटो दिखाया गया है और कोचिंग सेंटर में --

पढ़ाया जाता है कोचिंग चेन्टर में --

मास्टर का फोकस सिर्फ एक स्टूडेंट पर रहता है।

बोहत तरह के लोग नहाने के लिए जाते है।

दिखाया गया है यह गुफा बहुत हीं --